ये ऑफिस में ब्लू कलर की तीन चेयर रखी हुई है दीवार पर यलो कलर का पेंट है गुप्ता आयरन स्टोर के दो नंबर दिए हुए हैं।

इस दीवार को स्क्वायर शेप के वॉलपेपर लगाया हुआ है।

रेड कलर की कैरी बैग रखी हुई है ब्लैक एंड वाइट कलर का हैंड कॉस रखा हुआ है।

और काउंटर पर और एक आदमी बैठा हुआ है।

एक रूम में दो टेबल हैं उसके ब्लू और रेड कलर के स्मॉल चेयर है रूम को व्हाईट कलर दिया गया है पिंक कलर का पर्दा लगा हुआ है।

बेड के पीछे की दीवार को गोल्डन ब्राउन कलर से कलर दिया गया है बेड के साइड में--

नाइन सेवेन ज़ीरो टू है साथ में हेवल्स का मिक्सर ग्राइंडर का ऐड दिया हुआ है।

बहुत सारे भगवान की पूजा हो रही है माँ और बैठे बड़े--

छोटे बच्चे ने स्काई ब्लू और व्हाईट कलर की जींस पहनी हुई है।

एक डोर पे पिंक कलर का पर्दा है दूसरे पर ब्लू कलर का प--

पिंक और ब्लू कलर से लिखा हुआ है उसके बाजू में टेबल और चेयर है।

यहाँ पर आपको पहले रेक में यलो कलर का प्रोटीन का डब्बा सेकंड रेक में ऑरेंज कलर का प्रोटीन का डब्बा--

थर्ड रेक में बहुत से छोटे-छोटे प्रोटीन के डब्बे देखने के लिए मिल सकते हैं।

विंडो पे आपको एग्जस्ट फैन और वॉच भी लगी हुई है उसके नीचे दो पोस्टर भी--

यलो कलर से पूरे स्टेज को सजाया गया है जहाँ पर आपको--

येलो और रेड कलर के टेबल कुर्सी भी देखने के लिए मिल सकते हैं।

रेडीश पिंक कलर की कार्पेट भी बिछी हुई है।

लोखंड के बड़े से गेट के अंदर एक चारपाई रखी हुई है उस चारपाई पे एक चादर भी है उसके ही साथ में एक कुआं भी नजर आ रहा है।

वाल को रेड कलर से पेंट किया गया है।

ये होटल में बहुत सारी टेबल कुर्सी है कुर्सी प्लास्टिक की है और टेबल लकड़े के हैं।

तीन से चार पंखे लगे हुए हैं तीन से चार हेडलाइट है।

होटल में किचन भी दिख रहा है जिसमें साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है।

एक मॉल में वन प्लस टेन प्रो फाइव जी कैप्चर एव्री होरिजेन का बैनर लगा हुआ है।

टेबल के साइड में एक अंकल स्काई ब्लू और वाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहनकर खड़े हुए है दूसरे तरफ एक लेडी भी खड़ी हुई है।